जहाँ पे संतरे रंग का गेट है और उसके बगल में एक छोटा सा गेट और मौजूद है और यहां बहोत सारे पेड़ पौधे भी देखे जा सकते हैं और मंदिर के पास में एक पीले रंग का झंडा लगाया हुआ है।

चलते हुए तथा साईकिल चलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।